और सफा रखा है बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

एक बथुड़ान हम गार्डन बना हुआ है गार्डन जैसा बना हुआ है कुछ हरा हरा है एज बिन एगासि बना हुआ है कुछ अ समसक पेड़ लगे हुआ है बड़े बड़े तख़्त पेड़ लगे हुऐ हैं।

ये बहुत बड़ा मंदिर है भगवान का मंदिर है मम लाल गेट लगा हुआ है ब्लू कलर रेड कलर वाइट कलर नील कलर से सजा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिग हे- हो रही है रह डोडी कही लोग है अस लेके जहा रब है तीन चार लोग खड़े हुए है।

यहां बहुत से लोग दो लोग खड़े है